यहाँ पर काफी सारे डिजाइनर कॉफी कप टंगे हुए हैं कुछ कप नीचे जमीन पर उल्टे रखे हुए हैं।

यहाँ सामने क्लास चल रही है। सारे बच्चे बैंच पर बैठे हुए हैं। बीच में एक टीचर खड़े हुए हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

यहाँ सामने से रोड नजर आ रही है। ऊपर धूप की रोशनिया पड़ ही हैं।

यहाँ जमीन पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है यहाँ बस पानी में डूब गई है एक आदमी पन्नी ओढ़ कर जा रहा है।

माला लगी हुई है। उसने सारे जेवर पहन रखे हुए है। पीछे स्कूल का एक पोस्टर लगा हुआ है और नीला कपड़ा लगा हुआ है। यहाँ ऊपर एक पंखा लगा हुआ है जो कि बंद --

यहाँ सामने एक कैफे हैं जिसके अंदर दो लड़के बैठे हुए हैं। टेबल पर दो बोल रखे हुए हैं जिसके अंदर कुछ है।

यहाँ सामने दो कप हैं एक बोटल है और किनारे पर कुछ और छोटे से बोटल्स नजर आ रहे --

यहां पर नदी के किनारे काफी सारे नाव लगे हुए हैं यहां पर किनारे पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं यहां पर लोगों ने बैग टांग रखे हुए हैं नीचे जमीन --